और सामने दो पंखे भी लग रहे हैं।

और उस घर पर बहोत से खिड़कियां लगी हुई है।

और नीचे पेडिओ पर बहुत से आदमी बैठे हुए हैं।

और उनके सामने बहुत सा बड़ा शीशे का गेट लगा हुआ है।

इस चित्र में दो बड़े शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं।

उसके पीछे एक महिला और एक बच्चा भी खड़ा हुआ है।

और साइड में एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

और एक कुर्सी भी रखी हुई है।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

इसमें बहुत सी पुस्तके रखी हुई है।

इस चित्र में बहुत से बाइके और कार और कुछ ई रिक्शा खड़ी हुई है।

इस गार्डन में बहुत से हरी हरी घासें और पौधे गमले में लगे हुए हैं।

इस पम्पे पर बहुत से आदमी और बाईकें खड़ी हुई है।

उसके पीछे एक बहुत बड़ा लाइट का टावर है।

और एक महिला खड़ी हुई है।

यह एक जिम की दुकान है।

इस दुकान में एक आदमी मुंह पर फेशियल करवाए बैठा है।